बहुत ही खुबसुरत दिखाई दे रहा है और पीछे कि तरफ दरवाजा भी लगा हुआ है उपर लाल कलर कि पट्टी है जो कि बहोत देखने मे बहुत खुबसुरत दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है जोकि पीले कलर के कपड़े पहने हुए है सामने मंदिर बने हुए है जोकि बहोत ही खूबसूरत लग रहे है यहाँ पर पेड़ - पौधे भी है जोकि बहोत ही हरी - भरी लग रहे हैं।

बहुत ही गन्दगी मची हुई है यहाँ पर जमीन भी दिखा रही है बहुत ही काली-काली दिखाई दे रही है।

यहाँ हमें बहुत स यहाँ हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर बैठे हैं कुछ सीटें- विटे दी हुई है जो की देखने में काफी खूबसूरत लग रहे हैं।

और टाईल्स भी लगे हुए है जो कि देखने में काफी सुंदर है और रात भी है और बादल बहोत काले दिखाई दे रहे है और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है जो कि काफी हरे-भरे है खम्भे भी लगे हुए है बिजली के जिनमें है तार निकरे है बहो --